मुझे लग रहा है हॉस्पिटल है और बहुत बड़ा कॉरीडोर है बहुत सुंदर।

बहुत ही अच्छा लग रहा है।

सारा बहुत सारा एक्सरसाइज का मशीन्स है।

लिया है और बिल्डिंग है।

वहां पे बहोजन खड़े हैं।

सुंदर कलरफूल के पिलर्स हैं यहां --

दूर-दूर तक पहाड़ दिख रहा है खुला आसमान है बादल भी है।

अ रास्ता है रास्ता दोनों तरफ --

और कुछ लोग फोटो खीच रहे है बहुत ही --

भीड़ के बिच में लोग को जाना पडा --

लकड़ी बांधा जाएगा उसके ऊपर और --

सामने बड़ा सा जगह है।

चर्च के ऊपर बड़ा सा क्रॉ --

बहत ही अच्छा नजारा है।

बड़ा सा सुंदर सा दुकान है।

और अच्छा लग रहा है लोग खड़े हैं खरीद रहे हैं।

जैसे मैं देख पा रही हूं ये सुंदर सा --

जैसे लग रहा हैं कोई --

जैसे मैं देख पा रही हूं शाम का समय है।

माहौल है और शादी के लिए इंतजाम किया गया है डेकोरेशन किया गया --

बहुत बड़ा जगह है यहां पे --

स्टैचू है और सुंदर लग रहा है पेड़ पौधे मे भरा हुआ ये पार्क --

क्रॉस है और क्रॉस के साथ हम जीसस और बहुत ही सुंदर लग रहा है।